यहाँ पे एक मॉल दिखाई दे रहा है जोकि बहोत ही खूबसूरत लग रहा है और यहाँ पर बहोत सारी आदमी लोग भी खड़े हुए है जोकि दिखने में बहोत जन संख्या में है और यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है जोकि पिलर भी खड़े भी हुए है।